दीवार पर बहुत सारे रंग बिरंगे फ्लावर लगे हुए हैं।

यह एक दुकान का दृश्य है दुकान में अंदर ट्यूबलाइट लगा हुआ है।

यह एक शोरूम के बिल्डिंग का दृश्य है शोरूम के अंदर बहुत सारी बाइक लगी हुई है।

यह एक कमरे का दृश्य से है कमरे की दीवार पर वाइट रंग का पेंट किया गया है।

इस कमरे में एक मशीन बड़ी सी रखी गई है।

नीचे में मिट्टी ही मिट्टी है उनके पास छोटा छोटा बॉक्सेस भी रखा हुआ है।

सारे बोरिया एक के ऊपर एक रखे गए है।

यहां चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ पौधे और बड़े बड़े पहाड़ नजर आ रहे हैं।

बाहर एक और टरैकटर लगा हुआ है।

एक रोड के किनारे का दृश्य है रोड के किनारे चारों तरफ से बाउंड्री किया हुआ है।

यहां फूलों की माला भी लटकी हुई है सामने एक बड़ी सी स्टैचू है।

बॉउंड्री के बाहर भी बहुत लोग हैं।

यहां पे बहोत सारे टेबल चेयर भी लगे गए हैं।

टेबल का कलर ब्लैक है और चेयर का कलर ग्रीन है।

यह एक रोड का दृश्य है रोड के दोनों तरफ बिल्डिंग्स बनी हुई है।

टेबल भी है टेबल पर बॉटल रखा हुआ है।